मुझे यहां पर एक घड़ी दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर एक कूलर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारी भगवान की फोटो दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक ऑडिटोरियम दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारे फ्लैट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक हार्डवेयर स्टोर दिखाई दे रहा है।

नंबर नाइन एट नाइन थ्री नाइन सिक्स नाइन सिक्स सेवन फोर है।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

मुझे यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक पेन दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।